आसपास बहुत सारी मछली के कार्टून रखे गए हैं।

एक बार टी गार्डन है इसके बीच में एक पतला का रास्ता बनाया गया है अनजाने के लिए।

एक छत पे एक व्यक्ति मौजूद है जो ए_सी बना रहा है।

दो ए_सी का फैन लगा हुआ है।

पीछे एक पर्दा लगा हुआ है।

बहोत सारे लोग मौजूद है।

ये एक बड़ी सी इमारत खड़ी है इसमें एक बड़ा सा घड़ी लगा हुआ है।

यह एक सैलून दुकान है।

दीवाल का रंग हरा है।

यहां एक बड़ा सा सर्विस सेंटर है जिसका नाम है फन ट्रैक ।

कुछ नारियल के पेड़ भी उगे हुए हैं।

द्वार के सामने फूल से सजाया गया है।

कुछ बच्चे भी मौजूद हैं।

हाथ में कैंडल लिए हुए हैं।

एक व्यक्ति है जिसके गले में ब्ल्यूटूथ लगा हुआ है।

सामने एक मग रखा हुआ है।

स्विच बोर्ड भी लगाया गया है।

ये एक बड़ा सा मॉल है।

आस पास बड़े बड़े पेड़ हैं।

ये एक सड़क है उसके उस पार जल्दापारा नेशनल पार्क --

आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं।

इसके चारों ओर लाइट्स लगाए गए हैं।

पेड़ भी लगाए गए हैं।

कुछ घर भी मौजूद है।

वॉल में कुछ तस्वीरें लगाई गई है।

कुर्सी टेबल लगाए गए हैं।

दीवाल का रंग सफेद है।

कुछ पंखे भी लगाए गए हैं।

एक बड़ा सा मार्केट है।

एक दो दुकाने लगी हुई है।

एक मिकी माउस का प्ले वाला लगा हुआ है।

एक बड़ा सा घर है।

जिसका रंग रंग बिरंगी है।

खिड़की को रंग रहा है।

पीछे एक पक्षी नज़र आ रहा है।

एक बड़ा सा सैलून का दुकान है।

बहोत सारे लोग मौजूद हैं।

बैलून से सजाया गया है।

द्वार पे फूल लगाए गए हैं।